आनंद आश्रम लिखा हवा है।

ऊपर तार बंदी हो रखी है मौसम बिल्कुल साफ है।

बाहर प्लास्टिक की कुर्सी लगी है।

ताजे ताजे फूल कुछ कस्टमर दुकान पर है पीला कपड़ा टी शर्ट --

गंगा बाल विद्यालय बोर्ड लगा हुआ--